जिम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में बॉडी भी बनता है और जिम में बहुत प्रकार के मशीन भी रह --

यह एक बहुत बड़ा फिल्ड है | इस फिल्ड में बहुत सारे लोग सुबह को टेल्हने के लिए जाते है और इस फील्ड में --

यह एक जिम का फोटो दिखाया गया है। यह जिम काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे बहोत सारे लोग जाते हैं ।

यह एक नदी है। यह नदी काफी ज्यादा बड़ा है। इस नदी में बहुत ही ज्यादा पानी है।

कपड़ा मिलता है। यहाँ पे सूट और जैकेट भी मिलते है इसलिए बहोत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए।